और जंगल में बहोत सारे पेड़-पोधे हैं और पेड़ के नीचे बहोत सारे जानवर हैं जो की एक साथ झुंड में है और बहोत सारे जानवर है और झुंड में है और बहोत ही अच्छा नज़ारा--

और ये पेड़-पोधे लगे हुए है और इसके सामने एक लड़का बैठा हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है जो की देखने में बहोत ही खूबसुरत--